इस स्थान पर बहोत से लोग पर्यटन के लिए आते है और यह एक विख्यात पर्यटन केंद्र है।

इस तस्वीर में हम एक झरने को देखने पा रहे हैं यह झरना बहुत ही मन प्रसन्न दायक है और इस झरने के किनारे एक बहुत ही बड़ा पहाड़ बना हुआ है।

इस तस्वीर में हम एक स्थान को देखने पा रहे है जहाँ पर बहुत से महंगे और बहुत से मजबूत वस्त्र रखे हुए है। --